इस जगह को बहोत अच्छा सजाया गया है यहाँ लाइटिंग भी कराया गया है जो देखने मे बहोत अच्छे दिखते हैं लाइटिंग की व्यवस्था बहोत किया गया है।

यह एक रेलवे लोड प्लेटफार्म है। यहाँ प्लेटफार्म में काफी यात्री खड़े हैं ट्रेन अभी आई नहीं है कोई ओवर-ब्रिज से उ उसपार को जा रहे --

यह कोई ओफिस है। ऑफिस के बाहर बहुत से फूल के पेड़ लगाए गए है। यह जगह बहुत ही अच्छा है। यहां बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है जो काफी अच्छा --

कोई दुकान है यहाँ लैपटॉप रखें गए हैं और दो चार कार्टून भी रखे गए हैं यह दुकान में लैपटॉप जिराॅक्स आदि की सुविधा है।

ये होंडा शोरूम है यहां होंडा के सभी मोटर साइकिल मिलते हैं यह शोरूम के मालिक बहुत अच्छे हैं यह फाइनेंस पर कम ब्याज में गाड़ी --

यह एक बगीचा है इस बगीचे में एक खरगोश बैठे हुए हैं काफी अच्छे दिखते हैं इस बगीचे में काफी हरे-भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं।

यह एक चार पहिया वाहन के गैरेज है यहाँ मैकेनिक चार पहिया वाहन का काम कर रहे हैं एक चार पहिया गाड़ी कुछ ऊपर में लगा के चक्का सब खोले हुए है।

यह काफी घना जंगल है यहाँ बहुत से झाटी पेड़-पौधे दिखाई देते है यह जंगल बहुत ही अच्छा और घना दिखाई देता है।